पर घास घास भी लगी हुई है और और दरख्त है दरख्त भी बहोत ज्यादा हरे भरे --

ये एक रोड है ये कच्ची सड़क का रोड है यहां पर इर्दगिर्द बहुत ज्यादा दरख़्त वगैरह लगे हुए हैं और यहां पर--

ये एक वर्कशॉप है जहा टायर जहां पर रेड कलर की कार खड़ी है रेड कलर या फिर वाईट कलर की कार खड़ी हुई है यहा पर एक टायर भी पड़ा हुआ है।

यहां पर यहां पर बहुत ज्यादा लोहे का लोहे--

मौजूद है और यहां पर एक डॉग भी खड़ा--

कुछ ने अपने हाथ में लाठियां पकड़ी हुई है दरिया के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है ब्रिज बहुत बड़ा है।

फिर एक बहोत अ बिल्डिंग्स बनी हुई है इसके बैक साइड पर व्हाइट कलर के बहोत बड़ी बड़ी--

और यहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है यहां पर पार्क के सामने दो--

एक किस्म के फूल सजावट के लिए हर किस्म के फूल मिल जाता है या फिर--

कुछ लोग ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहां पर वाइट कलर का पेंट लगा पेंट किया गया है।